ये एक पेट्रोल पंप दिखत है जहाँ पे बहोत सारे--

एक ऑटो खड़ी हुई दिखत हे छोटे-छोटे से गमले रखे हुए दिखत हे।

बहोत सारे झंडे दिख रहे है काले कलर की स्कूटी खड़ी हुई दिख रही है एक कार खड़ी हुई दिख रही है बहोत सारे पेड़ भी दिखत है।

सूरज दिखत हे बादल दिखत हे बहुत सारे--

निचे घास उगती हुई दिखत हे पत्थर पड़े हुए है थोड़ा पानी पड़ा हुआ दिखत हे घास उग रही है।

तीन चार ऑटो दिखत रही है जो की काले कलर की है।

ये एक रोड दिख रही है यहाँ पे बहोत सारी--

ये एक मेला लगा हुआ दिखत रहा है।

ये एक खाली मैदान दिखत रहा है इसमें बहोत सारी घास उगती हुई दिखत रही है।

परसो पानी भी भरा हुआ दिखत रहा है दू तीन पेड़ों दिख रहे है एक बिल्डिंग दिख रही है ओके खिड़की दिखत रेली है।

ये एक गार्डन दिखत रहा है इसमें एक लोहे का पाइप लगा हुआ दिखत रहा है।

लोहै के छोटे- छोटे पाइप मन भी दिख रहै है पीछे एक बिल्डिंग जैसा दिख रहा है।

पीछे पेड़ दिखत रहे है।

कुछ लोगों भी दिख रहे है दुकाने दिख रही है।

आलमारियाँ बनी हुई है उसमे शैम्पू रखा है क्रीम रखे हुए दिख रहै है।

साइड में लोहै का पाइप है पीछे दीवाल --

पेंट लगा हुआ दिख रहा है हरे कलर का --

कुछ लोग भी दिख रहै है बाइक उन दिख रही है।

येल बिजली के खम्भे ऑन दिखत रहे बिजली के वायर दिखत रहिले।

ये एक सब्जी की दुकान दिखत रइली है इसमें बहुत सारी डलियन रखी हुई दिखत रही है।

कुर्सियाँ लगी हुई है दुइ तीन लोगोन बैठे हुए है।

लकड़ी के कबर्ड मन बने हुए है उसमें कुर्सी मन लगी है काले कलर की पर्दे लगे हुए है।

चादर लगी हुई दिख रही है बहुत सारे बिजली जलती हुई दिख रही है लोहे के खम्बे दिख रहे है बैठने के दोए तीन --